यहां एक इमारत दिखाई दे रही है यहां कुछ पेड़ नजर आ रहे है इस इमारत के आगे --

यह चाय की दुकान एक छोटा बच्‍चा चला रहा हैं।

यह एक मंदिर की गुफा है जहां श्रद्धालु कठिन से कठिन परिस्थितियां--

यहां एक बांध है जो पानी को संग्रिहित करने के लिए बनाया जाता है यहां नदी दिखाई दे रही हैं।

सभी बहुत सुुन्‍दर नजारा दिख रहा है।

जो बहुत ही सुन्‍दर दिख रहा हैं।